और इसमें ग्रिल लगी हुई है जो रोड पूरा खाली है और साफ़ है।

यहाँ पे एक एस.बी.आई. का ए.टी.एम. नजर आ रहा है जिसमे शीशा तिशा सब फोड़-तोड़ के दिया है पर जिसको मलम पटी कर दिया है अंदर मे ऐसा लग रहा है एक चेयर है पर वो चेयर नहीं टेप है यहाँ पे ए.टी.एम. है |

तीनों चीजे ट्रेनिंग देने के लिए आसान है।